यहाँ पे ढेर सारा बुलेट लगा कर के रखा हुआ हैं ।

जो की लाइन से सजा करके रखा हुआ है काफी खुबसूरत लग रहा है और हर कलर का बुलेट दिखाई दे रहा है।

और ये छोटे-छोटे हरी-हरी अ पौधे पेड़-पौधे दिखाई दे रही है और ये टीना का बनाया हुआ गोडाउन टाइप का लग रहा है और एक पे बाउंड्री भी घेरी गई है।

और एक आदमी जो है ऑटो से नीचे है और उसका पैर ए ऑटो में है और एक व्यक्ति रोड के किनारे बैठा हुआ है और पीछे वाला ऑटो भी में भी आदमी है।

यहाँ से एक पुल दिखाई दे रही है और ये पुल लोहे का पुल है और ये पुल पानी में बनाई गई पुल है ये पुल काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है।